चार- पाँच सीढ़ी ऐसे दिख रहे है उस काँच का घर दिख रहे है दोपहर का समय हैं ।

और दो पुरुष बाहर निकल रहा हैं ।

मुझे इस तस्वीर में एक बहुत ही बड़ा जिम दुकान दिख रहा है वो जिम --

अंदर जा रहे हैं नीला और गुलाबी रंग का घर दिख रहे हैं और गेट है भूरे कलर का और एक ठो और एक ठो बहुत ही बड़ा कार है।

और उसके बगल में एक ठो मेल रोड जा रहा है।

और अगल- बगल बहुत ही बड़े पेड़ पोधे दिख रहे हैं और पानी में पत्थर भी बहुत बड़ा- बड़ा है और फ़ोटो भी खीचा रहे हैं और शाम का समय है और कई लोग देखे हैं।

और एक तो रूम है दरवाजा है पुशअप मारने के लिए भी है एक तो बेड --

दोपहर का समय है उसके आगे में पहाड़ भी दिख रहा हैं ।

एलईजीई लिखाया हुआ है और ए_टी_एम लिखाया हुआ है दोपहर का समय और ऊपर में कांच का लगाया हुआ है और रेड कलर और वाइट कलर क --

मुझे इस तस्वीर में एक --.

ओ दिख रहे उसके आगे में छीन का पेड़ दिख रहा उसके और आगे में आम का पेड़ दिख रहे हैं और छोटा छोटा घास उग रहा है।

मुझे इस तस्वीर में --.